एक एक शॉप के ऊपर लाइट्स वगैरह लगी हुई है रात का वक्त है।

अच्छा व्यु नज़र आ रहा है ओर लोग भी इस ड्रेसिंग को खरीदें --

जैबल गीत गान है और यहां लोग सोने के लिए--

ये इंडिया की बहुत मशहूर बंगला पेस्ट्री शॉप है।

ये ए इंडिया की बहुत मशहूर जगह पे शॉप है जैन बुक ।

नंबर भी इनका मेंशन है और लोग यहां मुक्तलिफ बुक्स खरीदने के लिए आए हुए हैं।

रोजी रोटी के लिए काम में मशगुल हैं।

जैसा कि आपको यहां चेहरे बलार नजर आ रहे हैं ये सारे लोग हैं।

कलर के मुख्तलिफ रंग के कपड़े पड़े हुए हैं।

ईंटे लगी हुई हैदरखत को देख के ऐसे लग रहा है ये बहुत पुरानी है।

ये दिल्ली में मौजूद एक माल है।

जिसको देखने के लिए मुक्तलिफ लोग आते हैं।

मुख्तलिफ तरीन डांस सीखने में मशगूल हैं।

तो बड़ा खूबसूरत तरीन मंजर के लिए लोग यहां आते हैं।

लोग पड़े हुए हैं यहां बहुत अच्छी तलीम --